इस चित्र में हमे कॉस्मेटिक की दुकान दिखाई दे रही है।

और बाहर तीन आदमी बैठे हुए हैं एक सुभाष चंद्र बोस की फोटो भी लगी हुई है।

चित्र में हमें यह ईंटों का घर दिखाई दे रहा है।

इसमें बड़ा गेट लगा हुआ है और छोटा गेट भी लगा हुआ है।

और यहां एक सिक्योटरि गार्ड भी बैठा हुआ--

गार्ड भी खड़े हुई हैं और यहां लाइट का प्रबंध भी तक।

यहां पर हमें एक मेडिकल स्टोर देखने को मिल रहा है जिस पर दवाइयां धरी हुई है।

टीनो को ठीक कर रहे हैं लोग।

वहां पर कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसमें--

हुआ है। सब खुशी से कुछ बनकर एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं।

यहां पर छत के ऊपर ये योगा कर रहे हैं।

पर आदमी भी रहे है गाड़ी भी खड़ी हुई है।

दिखाई दे रहा है जोकि--

ऊपर भी पड़ा हुआ है।

और इसमें इसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और ए_टी_एम में से कोई आदमी पैसे भी काढ़ रहा है।

यहां पर फ्रिज धरा है जिसके अंदर ठंडे धरे हुए हैं।

ये बहोत बड़ा होटल है इसमें अपनी फैमिली के साथ सब बैठे हुए हैं।

और ये बहुत खूबसूरत जंगल दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर हमें ढेर सारे आदमी दिख रहे हैं जो कि खाना खा रहे हैं टेंट लगे हुए हैं लाइटे जल रही है।

आसमान भी दिख रहा है बहुत पेड़ पौधे भी है।

एक घर में गेट लगा हुआ है काले रंगों की टाइल लगी हुई है।

और यहां बहोत सारी चीज है।

यहां पर बाजार के अंदर हाइवे पे एक गाड़ी खड़ी हुई है मेट्रो खड़ी हुई है।

बिजली के तार सिर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं।

ये यहां पर दूर दूर तक हरा जंगल दिखाई दे रहा है।

महेंद्रे का शोरूम है ये--

छोटे छोटे बच्चे भी हैं और उनके माता पिता भी यहां पर बैठे हुए--

इसके अंदर बहुत सारे बूफर धरे हुए--

यहां पर पोस्टर भी लगा हुआ--

पेड़ पौधे भी लगे हुए--

यहां पर बिजली के तार भी जा रहे हैं।

और ये चावल के डब्बे धरे हुए है जिनके अलग अलग प्राइज है ये एक मार्केट है नीचे टैल लगी हुई है।

बहोत सारा सामान धरा हुआ है और ये चावलों के खट्टे हैं।

ये एक गाड़ी का शोरूम है। इसमें दो आदमी दो एक बैठे हैं दो एक बैठे हैं एक गाड़ी खड़ी हुई है।

नीचे टाइल लगी हुई है उपर टाइल लगी हुई है।

दो आदमी और बैठे हैं और कुर्सियां पड़ी हुई है।